आ इनके ऊपर पेड़ लगें हुएँ है काफ़ी सारी खिड़कियां बनी हुई है कुछ गाड़िया खड़ी हुई है फोर वे फोर बिलर अ पक्की ज़मीन बनी हुई है आस पास बड़े-बड़े पेड़ --

कुछ कर्टेन लगे हुए हैं सफेद और गुलाबी कलर के एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ है जिसके ऊपर है लाल रंग का कपड़ा --

के आस-पास घर बने हुए हैं कुछ रोड बना हुआ है रोड के ऊपर काफी सारी गाड़ियां खडी हुई हैं मकानों की छतों के ऊपर टंकियां रखी हुई हैं और बहोत सारे पेड़ हैं।